मेज के बराबर साइड में एक स्कूटी भी खड़ी हुई है।

यह एक बहुत ही बड़ी नदी है।

मेज के ऊपर बच्चे भी बैठे हुए--

यह एक बहुत ही बड़ी दुकान है।

बराबर साइड में इसके दो पिलर भी खड़े हुए हैं जिसके ऊपर संखल लगी हुई है।

इस पहाड़ के बीचो बीच पानी भी चल रहा है।

मच्छी बाजार के अंदर बहुत सारी मच्छीआ भी रखी हुई है।

महिला के हाथ में कुछ पनिया और बैग भी है।

इस दुकान के अंदर जिम की मशीना भी रखी हुई है।